एक यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुये हैं जो कि फोन से बात कर रहे हैं।

अम मैं बहुत सारा इस साल वर्ल्ड कप भी है दो हजार तेईस में टीम इंडिया चाहते हैं शुभकामना देते हैं की अच्छी --